इस फोटो के अंतर्गत जो मुझे दिख रहा है।

वो है एक मोटर साइकिल जा रहा है पेट्रोल लेने यह एक पेट्रोल पंप है।